लोग पूजा करने आते है और हिन्दू में मंदील का महत्त्व होता है।

और लोगों को सुविधा होती है बसों से आने-जाने में।

ऊंचे पहाड़ो से चोटियों पे से पहाड़ पानी आ रहा है नीचे ।

यह एक लोगों को बहुत लायक बच्चे बच्चे बूढ़े लोग आते और खेलते हैं ।

चक्का भी खुला हुआ है दोनों साइड --

ये क्लासरूम है यहां बेंच पे --

पुल पाँच पाया छे पाया दिख रहे है और पेड़-पौधे आस-पास में दिख रहे हैं।

और अगल-बगल में ये रोड सोड --

और लोग बहुत ही यहां पे भीड़भाड़ --

येहां गाड़ी लगे हुई है और --

इंटर विद्यालय जहानाबाद ब्लॉक है ।

यहां पे एक मरदाना है और एक औरत है।

और लोग भी दिख रहे है।